कुछ सामान यहां पर लकड़ियों का भी दिखाई दे रहा हैं।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

आसपास में फर्नीचर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है।

शॉप में कई सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर कई सारी लाइट भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर झरना बेहता हुआ दिखाई दे रहा हैं।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

यहाँ पर एक बड़ी सी बेंच भी दिख रही है।

यहां पर कई सारे पुरुष व महिलाएं भी दिखाई दे रही है।